एक से एक अच्छी साइकिल रखी हुई हैं छोटे बच्चों की भी साइकिल है।

और घास एक बढ़िया सुन्दर सा ।

और कुछ खेल का सामान भी उपलब्ध है।

वो एक पेड़ के पास एक टैंकर ट्राली कर रहे हैं।

छायादार पेड़ लगी हुई है बहोत सुन्दर।

पलकिया वाले झूला भी दे लगे हुए है दो तख्ता रखे हुए है बैठने --

और उस किनारे बागवानी लगी हुई है उसमें गुलाब के फूल सोभादार पेड़ लगे हुए हैं पान केवी का पेड़ लगा हुआ है बहुत सुन्दर लगा हुआ है

और उसके यहाँ भी थोड़े और है कि ईमारत खड़ी हुई हैं ईमारत --